जैसा की मैं ये देख रही हूँ की ये सुबह का समय है और बहोत सुन्दर बड़ा जगह है और बहोत सारे बिल्डिंग है।

ओए जगह बोहोत साफ लग रहा है।

जैसा की मैं देख रही हूँ ये रात का समय है और यहाँ पे शोरूम है जिसका नाम है आईजी मोटर --

ये बाइक का शोरूम है शोरूम को बहुत सुंदर से अ --

यहाँ पे कट्ठे हुए हैं बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं सब खेल रहे हैं। सब कोई अलग-अलग खेलने का --

जैसा कि मैं देख मैं देख रही हूँ ये एक रात का समय है और यहां पे सामने एक बड़ा सा --

डांस प्रोग्राम चल रहा है और बोहोत सारी लड़कियां भरतनाट्यम कर रहे हैं।

व्हाइट में लिखा गया है नॉर्थेर्न इंडिया पब्लिक स्कूल गवर्नड बाइ बी.आर फाउंडेशन ।

नया टोटो और सुंदर कलर है ग्रीन कलर सी-ग्रीन और बहुत सुंदर लग रहा है।

जैसा कि मैं देख रही हूं। यह सुबह का समय है और सामने फेड्रल बैंक का बिल्डिंग है और साइड में उसका ए_टी_म ।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यह एक ऑफिस है और बहुत ही साफ क्लीन ऑफिस है।

और मेरे पास बहुत सारे रकम का बॉक्स है और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर बॉक्स को --

जैसा कि मैं देख रही हूं कि ये बड़ा सा ग्राउंड है और चारों तरफ पेड़ हैं।

और ग्राउंड में थोड़ा पानी है और ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खड़े हैं।

और स हर एक सेल फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है और दुकान के सामने एक स्कूटी खड़ा है।

पेड़ है और ग्राउंड में बहोत सारे लोग बच्चे सब इकट्ठे होके खेल रहे है।

जैसाकि मैं यहाँ देख रही हूँ ये सलून है और सलून में बहोत सुंदर से सजाया है और साफ भी है और यहाँ पे लाइट लगा हुआ है।